यह एक छोटा सा फूल का दुकान हे जहाँ पर गेंदे का फूल जो संतरे कलर में दिखाई दे रहा है।

यह एक बच्चे का शॉप दिखाई दे रहा हैं और यहाँ दीवारे आसमानी सफ़ेद और नारंगी कलर की दिखाई दे रहे हैं।

हर चेयर के ऊपर काँच के ग्लास रखे हैं और एक गुलाब का फुल रखा है।

और कुछ समाने रखे हुए कांच में दिखाई दे रही है और एक पलंग दिखाई दे रहा है जिसपे --

पीले नीले रंग के फूल रखे हुए हैं बहोत सारा आदमी जो झोला ले कर खड़े है कुछ आदमी जो टोपी पहन कर --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

और बहोत सारे डिब्बे पानी के बड़े बड़े बोत्तले जारें दिखाई दे रहे है और कुछ अंदर में डेरी मिल्क वगेरा चॉक्लेट वगेरा रखने के सामान दिख रहे हैं।

अ बहोत लाइटे दिख रही है रंग बिरंगी एक बहोत बड़ा कांच दिखाई दे रहा है और एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और केक वगेरह रखे हुए दिखाई दे रहे है एक टेबल दिखाई दे रह है जो लाल कपडे से ढका हुआ है।

एक काले रंग की गाड़ी दिख रही है एक नाव जो पानी में रखा हुआ दिख रहा है छोटा सा घर भी दिख रहा है।

यह एक छोटा सा पार्क दिखाई दे रहा है जहा पर बेठने की जगह बनी हुई है टेबल चेयर --

और एक घास से बना हुआ एक स्टेचू टाइप में पेड़ दिख रहा हे और कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी नजर आ रहे हैं और कुछ बड़े-बड़े पेड़ --

आदमी औरतें जो कलर फुल कपडे पहने दिख रहे हैं।

सफ़ेद चटनी और एक मिक्स चटनी भी रखी हुई है और दो चेयर जो लाल रंग की दिखाई दे रही हैं और दिवार नीले रंग की दिख रही है।

यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ हे परी-पंजाब एंड हरियाणा --

और आदमी आते-जाते दिखाई दे रही है एक रास्ता जो लाल रंग का जो है दिखाई दे रहा है।

और उसका चोंच पीले रंग का है कई बतख सफ़ेद व काले रंग में हैं।

यह एक छोले भटूरे का छोटा सा दुकान है जहाँ पर कड़ाई में छोला --

कटोरे में उसे छोला दिया गया ऊपर से प्याज --

गया एक बर्तन दिखाई दे रहा है किनारे में गुपचुप का काँच दिखाई दे रहा है कुछ प्याज कटी हुई रखी है।

यहाँ कुछ गाडी के शोरूम दिखाई दे रहे है जिसके ऊपर में लिखा हुआ है लाल कलर में हीरो --

यह एक रूम दिखाई दे रहा है जिसका गेट खुला हुआ है उसके अंत में बेड दिखाई दे रहा है बहुत सारी लाइटे दिखाई दे रही है दीवाल पे कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है।

उससे दूर में एक घर दिखाई दे रहा है जो गुलाबी और पिले रंग की है।

घर के ऊपर दो टंकी दिखाई दे रहे हैं जो काले रंग की है एक लड़की जो--

यह एक मार्केट है जहां पर एक बस दिखाई दे रही है जो काल्या और नीले रंग अ सफेद रंग में है।

और एक चाय का दुकान दिखाई दे रहा है और एक गैस और डब्बा नजर आ रहा हैं बहुत सारे घड़े भी दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे आदमी आ-जा रहे हैं।

यहाँ दीपावली मनाया जा रहा हे जहाँ रात का समय में कई बच्चे और लेडिज सादा रंग के कपडे पहने हुए छुर - छुरिया --

आलू बम जलाते हुए दिखाई दे रहे है एक लड़का जो सफ़ेद रंग का शर्ट पहने है और कला पैंट पहने खड़ा है दिखाई दे रहा है।

और एक गाडी दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद रंग का जाली लगा हुआ कुछ लाइटें भी दिख रही है।

और कुछ टेलीफोन दिखाई दे रहे हैं ये वॉशरूम दिखाई दे रहा है और कांच दिखाई दे रही यहां पर एक--

यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है जहाँ पर ए वन जो मेंस पार्लर है।

दिखाई दे रहा है और एक काले रंग की बाइक अ कुछ पंखे भी किनारे में दिख रहे हैं।

जैसे कि लाल नीले सफ़ेद भूरे --

यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा दिखाई दे रहा है साड़ी का रंग एक नीला रंग में साड़ी है बहोत से रंग बिरंगी साड़िया जैसे हरा लाल नारंगी कलर --

पीला सफ़ेद साड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई सजाई हुई दिखाई दे रही हैं।

यह एक बहुत ही सुंदर छोटासा घर दिखाई दे रहा है जहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव लिखा है।